और इधर लाइन से बैठे हुए हैं उधर कुछ मंच वंच है तो काफी सुन्दर दिख रहे हैं और यहां पंखा वंखा पूरा लगा है लाइन से और वहां--

और कैल्कुलेटर बोलते हैं और यह देखो कुत्ते का चित्र-उत्र दिए हैं तो मतलब यह कुत्ते का सामान मिलता है यहां कुत्ते के खाने के लिए और उसके स--

यहां एक स्कूल है यहां बहुत सारे मतलब स्टूडेंट आते हैं पढ़ने या तो हॉस्पिटल होगा हॉस्पिटल लग--

और सी_सी_टी_वि वि टी लगा है तो यह कुछ होगा जो इधर रैक वैक है अलमारी है जेल वेल का है यह जेल वेल ऐसी रेहता है।

यह एक शादी फंक्शन है और उधर बहुत सारे कुर्सियां लगे है और यहां बहुत सारे --